ये हमें एक चाय का कप दिख रहा है जो पकड़ा है नेस्कैफ़े का जो रेड और व्हाइट कलर का है।

पीछे एक बहोत अच्छा पहाड़ दिख रहा है हमें एक घर दिख रहा है पेड़-पौधे दिख रहे हैं पत्तियाँ दिख रही है कुछ ग्रासेस दिख रहे हैं हमें।

यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे है और--

और उसपे कहीं दीये जल रहे हैं यहां पे हमें तो दिख रहा है दीये जलते हुए।

साइड मे एक बस खड़ी है पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है वहां गाड़ी का नंबर लिखा गया है कुछ लिखा है यहाँ गाड़ी के ऊपर---

यहाँ पे एक गार्डन शो हो रहा है मुझे जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं| फैमिली पेड़ -पौधे दिख रहे हैं छोटे-बड़े।

कुछ झाड़ियाँ दिख रही है और पीछे मुझे पानी की टैंक दिख रही है बहुत सारे घर दिख रहे हैं।

यहाँ पर हमें कुछ बलून दिख रहे हैं पिंक कलर के। बहोत से लोग हमे यहाँ दिख रहे हैं। बच्चे हमें दिखे रहे हैं यहां पे ।

येलो पिंक कलर से डेकोरेट पर्दों से डेकोरेट किया गया है। ये फोटो आधी ब्लैक एंड वाइट है जहां से चक्र भी हमें दिख रहा है।